बहोत सारी लाइटें भी दिख रही है।

तस्वीर में बहुत बड़ा गुफा है।

दाव भी चल रहा है।

बहोत सारी महिला और पुरुष भी है।

बल्ब भी है मग भी है और बकेट भी है।

एक बच्चा भी दिख रहा हैं।

साइड में वॉल भी दिख रहा है।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

सफेद आसमान भी दिख रहा है।

और कंबल भी दिख रहा है।

ओ खुला आसमान भी है।

और पेड़ पौधे भी दिख रहा है और कुछ बिल्डिंग भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक फैक्ट्री दिख रहा है।

इस तस्वीर पे एक घर दिख रहा है।

इस तस्वीर में शादी का मंडप दिख रहा है।

मे आई हेल्प यू का साइन भी है।

इस मुझे तस्वीर में मुझे एजिंग जेल दिख रहा है।

बहोत सारे लाइटें दिख रहा है।

बहुत सारे कमल के पत्ते भी है और कमल भी है।

और तालाब का किनारा भी है।

इस तस्वीर पर रास्ते पर कपड़े की दुकान है।

और अंदर लाइट जल रहा है।